यहाँ पे एक बंदा बैठा है काफी खूबसूरत दिख रहा है। ये बादल बदली देखिये काफी खूबसूरत नज़ारा है। ये बोहोत खूबसूरत जगह दिख रहा है काफी बोहोत बड़ा है।

यहाँ इधर खम्भे भी दिख रहे हैं दूर-दूर यहाँ आरिपास गाँव भी दिख रहा है मतलब हर-द्वार सब दिख --

लग रहा ये एक चक्का बाँध है यहाँ फाटक मतलब हर यहाँ से खुलता है तो हर जगह पानी जाता है यहीं से ये काफी खूबसूरत लग रहा है बहुत पुराना ये चक्का बाँध है यहाँ पे चार पांच --

खूबसूरत लग रहा है देखने में काफ़ी खूबसूरत जगह --

घूमने के लिए लोग भी जाते होंगे यहाँ पे काफी खूबसूरत दिख रहा है देखने में।

यहाँ पे डस्टबिन भी रखा गया है यहाँ लाल फीता से घेरा हुआ है काफ़ी खूबसूरत देखने में जगह दिख रहा है काफ़ी --

पानी दिख रहा है। काफी खूबसूरत नजरा है यहां पे ।

मतलब एक जेन्स कोच है। एक लेडीज कोच काफी खूबसूरत --

जो हेयर कटिंग है काफी मलतब नामी है। मतलब बाल ओर बढ़िया से मतलब हर प्रकार का डिज़ाइन बनाता है। नाम भी लिख देता है ।

और कनेक्शन वाला मतलब ले भी ले कनेक्शन भी मिलता है बिल भी भरा जाता है।

बगीचा भी खजूर का दिख रहा है। पेड़ भी दिख रहा है। काफी खूबसूरत नज़ारा है। देखने में --

बर्जा भी बना है। काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ लाइट हर कलर का बन रहा है और साइड में --

पेड़-पौधे हरियाली भी दिख रही है काफी मतलब पुरानी मतलब खण्डहर है। यहाँ पे घूमने सेल्फी के लिए आ रहे हैं लोग।

पेपर देने के लिए ये यहाँ पे बाइक खड़ी है। ये मतलब बहुत खुबसूरत जगह है घूमने लायक।

काफी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मस्जिद है ए काफी मिनारें हैं बहोत सारी मिनारें हैं।

यहाँ पे सामने माइक भी लगा है खिरकी भी है यहाँ तार भी दिख रहा है।